जैसे कि आप देख सकते हैं यहां बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

जैसे की आप देख सकते हैं यहां एक गाड़ी रखी है।

इन उन जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक स्विमिंग पूल है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक बिल्डिंग है।

यह एक मंदिर है।

यहां बहुत सारी कुर्सी रखी है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक टी_वी रखी है।

यहां यह एक मैदान है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे--

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे लोग हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां कुर्सियां रखी हैं।

जैसे की आप यहां देख सकते हैं एक गेट लगा है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां बहुत सारे खिलौने रखे हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां कुलसी रखी है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह काफी सारे लोग हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक कूलर है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां काफी सारे पेड़ हैं।

आप देख सकते हैं यह एक--

जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक कटिंग की दुकान है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक पेड़ लगे हुए हैं।